बोट के अगल-बगल पेड़-पौधे हैं जो काफी बड़े-बड़े हैं और हरे-भरे हैं नदी के उस पार पहाड़ टाइप का दिखाई दे रहा हैं।

रस्ते के उस पार काफी सारे मकान है मकान मे सफेद कलर के उसके बीच में टालियां है उसके पीछे साइड काफी सारे पेड़ पौधे है जो हरे - भरे हैं।

काफी बड़े बड़े है बगल में एक ब्रिज है ब्रिज सीमेंट का है उसके बगल किनारे साइड लोहे का एक सेफ्टी कवच लगा हुआ है यहां पे मंदिर के बगल में लाल कलर का एक झंडा है।

यहाँ पे एक बस है बस सफेद कलर का है बस का नंबर है सी जी वन जीरो जी वन नाइन जीरो एट उसमें नाम लिखा हुआ है आर_ए_जे_डी_एच_ए_एन_आई और डब्लू_डब्लू_आर ।

दीवाल ईटें का है ईटें सीमेंट का है उसके बगल में पीले कलर का बस और है उसके बगल में एक मकान है मकान सफेद कलर का है पीछे साइड काफी सारे पेड़ पौधे हैं जो हरे भरे हैं काफी बड़े-बड़े हैं।

रास्ते में काफी लोग चल रहे है अलग बगल बस है बस सफेद कलर और पीले कलर की है पीछे से एक मकान है मकान काफी बड़ा है मकान के किनारे साइड फर्श बना हुआ है ऊपर साइड एक टंकी है टंकी काले कलर --